ये एक कमरा है कमरा में दो लोग बैठा हुआ है जिसमे में एक महिला है और एक बुजुर्ग आदमी है महिला कुछ काम कर रही है डॉक्टर घर जैसा लग रहा हैं।

ये एक बुक स्टोर लग रहा हैं मेडिकल लाइन का हैं लाइब्रेरियन उसमे मेडिकल का बुक मिलता होगा।

और तीन लड़का दिखाई दे रहा है एक लेडीज है जो की चाय पी रही है।

इसी तरफ कर के मानव कंकाल रखा हुआ हैं।